झूलो में एक जाली का झूला भी लगा हुआ है।

उसके पास में वोडाफ़ोन थ्री जी भी लिखा हुआ है।

महल में बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक सुज़ुकी सेल्स एण्ड सर्विस सेंटर का दृश्य है।

दो कुर्सियां बाहर की तरफ रखी गई हैं।